इसकी शर्ट का कलर गोल्डन है एंड ब्लैक पेंट है एंड रेड कलर की शूज पहना हुआ है।

अ स्वेटर जैकेट पहना रखा है एंड ब्लू डेनिम पहन के रखी है।

लेडीज बैठी हुई है वहाँ पे कुछ जेंट्स खड़े हुए है | यहाँ पे नेशनल फ्लैग फहराया गया है ।

दीवार है और शायद सीलिंग --

ये एक फीमेल जेनरल वार्ड है।

ये एक गार्डन है जिसे प्रॉपर्ली अ अ किया गया घास उसकी काटी गई है।

एक फ्लैग्स लगा हुआ है।

एंड यहाँ पे शटर है उसका कलर जो है चैनल का वो ब्लैक है | वहाँ पे टीचर खड़ी हुई है ब्लू कलर की साड़ी पेहन कर |

ये रेड कलर की कार बाँधी हुई है नीचे कार को ठीक करने के लिए --

प्ले मतलब छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं --

ग्रीन कलर में है ऑरेंज कलर रेड कलर का बोर्डेर है एंड येलो कलर का है।